मेला एक बहोत बड़े ग्राउंड में बना हुआ लगा हुआ है।

खिड़कियां भी लगी हुई हैं और यहां पे बैलून भी टंगे हुए हैं।

कुछ घर बड़े हैं कुछ घर छोटे हैं।

एक जेंट्स खड़ा हुआ है एक जेंट्स बैठा भी हुआ है।

यहां पे एक कार भी खड़ी हुई है और आस पास बहुत सारी दुकानें भी है।

ये एक खाने पीने वाली दुकान है और उसके अंदर बहुत सारी बोतल भी रखी हुई हैं।